एक्सरसाइज करने की जगह है जहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करने की सामान भी रखे गए हैं।

और एक आदमी साइड में मोबाइल ले कर के खड़ा है।